स्टेज का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ पानी के फुहारे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर में एक बड़े से डैम की दृश्य दिखाई दे रही है।

कुछ बड़ा सा चट्टान भी पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक इमारत की दृश्य दिखाई दे रही है जिसका रंग हरा है।

स्कूटी भी लगी हुई है।

उसके बोर्ड पे सुपर शक्ति सोनू ट्रेडर्स मेन रोड गढ़वा लिखा हुआ है।

आसमान में बादल छाया हुआ है।

बाइक ऑटो सेंटर भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ खेत एवं पौधे भी लगे हुए हैं।

और हाथ में एक कॉफी का कप भी लिया हुआ है।

रोड पे एक सफेद रंग की लाइनें भी खिंची हुई है।

और कई बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।

पर्दे का रंग हरा और काला है।

और कुछ पेड़े भी दिखाई दे रहे है।

गाढ़े नीले रंग की गेट भी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर में एक मिठाई की दुकान की अंदरिय हिस्से की दृश्य दिखाई दे रही है।

तीन भागों में बांटा गया है।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

जिनमे कई विभिन्न विभिन्न प्रकारों के रंगों के चिड़िए है।

कांच की बनी काउंटर भी दिखाई दे रही है।

एवं सीलिंग पे कुछ पंखे भी टंगे हुई दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान साफ और नीला दिखाई दे रहा है।

और किनारे किनारे कुछ सजावटें की गयी हैं एवं पीछे फूलों से दिल बनाया गया है।

जो कांच की बनी हुई है एवं इमारत के पीछे कई पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसपे कई लोग भी बैठे हुए हैं।

एवंम कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ इमारतें भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं नीचे फर्श हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

पीछे भी एक बड़ा सा पहाड़ चट्टान भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक हाल की दृश्य दिखाई दे रही है।

एक दरवाजा अलमुनियम के भी हैं।

एवंम बाहर में कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं जो खेल रहे हैं।